एक वाहन के शीशा पर धूल लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक रास्ता बना हुआ है।

इस रेस्टोरेंट में वेटर्स दिख रहे हैं।

एक दीवाल पर गैलेक्सी सैलून लिखा हुआ है।

यहां पर एक पानी की टंकी भी दिख रही है।

यहां पर इंडिगो भी लिखा हुआ है।

इस दुकान में कपबर्ड लगा हुआ है जिस पर स्टेशनरी सामान रखा हुआ है।

एक टेंट में एनुअल एथलेटिक मीट लिखा हुआ है।

यहां पर कुछ इमारतें दिख रही है।

इस तस्वीर में एक बिजली का खंबा है।

भवन के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है।

बिल्डिंग पर सिटी स्टाइल लिखा हुआ है।

जमीन में टाइल्से लगी हुई है।